और इस इमेज में एक व्यक्ति बाइक के पास खड़ा हुआ है।

और यहां पर हमन हो रहा है और पीछे कुछ फल भी रखे हुए हैं।

और इसके नीचे एक फर्श भी बिछा हुआ है।

उस मकान के बाहर छोटी छोटे घास भी दिखाई दे रही है और छोटे छोटे पेड़ भी हैं।

इसमें ग्रिल भी लगी हुई है और इसमें एक करवा भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी के पास बाल्टी भी रखी हुई है और --

एक आदमी के पास व्हाइट कलर का कट्टा भी रखा हुआ है।

यह एक बस स्टैंड दिख रहा है और यहां पर बहुत सारी कुर्सियां भी बिछी हुई हैं।

इस फोटो में एक आदमी वे उस आदमी के पास एक लड़की बैठी हुई है।

दूसरी कुर्सी पर एक औरत व छोटी लड़की बैठी हुई है।

और पीछे दीवार पर तीन पेंटिंग लगी हुई है।

इस फैक्ट्री से परे कुछ मकान भी दिख रहे हैं ओर--

एक लड़की के सामने ए कुछ प्लेट ल रखी हुई हैं और एक प्लेट में पीला रंग है और दूसरी प्लेट में गुलाबी रंग है।

इस फोटो में बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे लगे हुए हैं।

इसमें पानी भी भरा हुआ है और पानी के बाहर स्टील की रॉड भी लगी हुई है।

इस पर एक डिश भी लगा हुआ है और इस मकान के बाहर एक मीटर भी लगा हुआ है।

यह फोटो एक दुकान का दिख रहा है जिसमें छत के पंखे वह नीचे के पंखे भी हैं।

सी_सी_टी_वी कैमरा भी दिखाई पड़ रहा है और एक घड़ी भी दिखाई पड़ रही है।

सारे मकान भी दिख रहे है और इसमें बहुत सारे तार भी दिख रहे है।

इसमें खंभे का एक हिस्सा भी दिख रहा है और कुछ पेड़ भी दिख रहे हैं।

एक व्यक्ति ने लाल रंग की जर्सी भी पहनी हुई है और उसने गल्ले में सोल भी घेरा हुआ है।

कि साइड में एक दुकान भी दिख रही है जिसका शटर बंद हो रहा--

और इस इमेज में एक छोटा सा बालक गाड़ी में बैठा हुआ है।